जीसमें एक छोटा सा कमरा बना हुआ है।

दीवालों पर फास्ट फूड के चित्र चिपके हुए हैं।

इस तस्वीर में गौतम बुद्ध की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में एक शादी की पार्टी है।

जिसमें बहुत सारी सजावट की गई है।

यह तस्वीर एस_बी_आई बैंक की है।

के भोजन के लिए डिब्बे भी रखे हैं।

व्यक्ति ने हाथ में चाकू पकड़ रखा हुआ है।

जिसने काले रंग का कोट और हाथ में घड़ी पेहन रखा है।

टेबल पर एक मेनू कार्ड भी रखा हुआ है।

दरवाजे में कांच लगा हुआ है। बहुत सारी अलमारियों में समान रखा है।

बिजली का तार भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक मकान का निर्माण हो रहा है।

पास के ही मकान में एक नीले कलर की पानी की टंकी रखी हुई है।

इसमें एक नाव रखी हुई है।

यह तस्वीर एक दुकान की है।

बालों में मेहंदी लगाने वाली भी टंगी हुई है।

जिसने बैग टांग रखा हुआ है।

पार्क के बीच में सड़क भी बनी हुई है।

और बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

और बाहर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं।

जिसमें लाल और काले रंग के गुब्बारों से सजावट की गई है।

मंदिर के पास सामने की ओर एक नंदी बाबा भी रखें हुए हैं।

यह तस्वीर एक मेट्रो के अंदर की है।

इस तस्वीर में लीचियाँ दिखाई दे रही --

एक सुखा पेड़ भी लगा हुआ हैं।

हाथ में कंगन और धागा बांध रखा है।

एक टेबल पर एक ट्रे रखी हुई है जिस पर कुछ सामान भी रखा हुआ है।

पास में ही उसके और भी सामान रखा हुआ है।

एक कैरी बनी हुई है जिसमें पौधे लगे हुए हैं।